फैक्ट्री व्हाइट और ब्लू कलर की है।

अंदर और बाहर पत्थर रखे हुए दिख रहे हैं।

घास और झाड़ भी नजर आ रहे हैं।

केले और भी कई फ्रूट्स नजर आ रहे हैं।

यहां हमें कुछ वर्कर्स काम करते हुए--

और अलग अलग कलर के बैग लटके हुए हैं।

और बहुत सारे फुग्गे दिख रहे हैं।

यहां हमे एक बिल्डिंग दिख रही है।

एक बंदा शेरवानी में खड़ा हुआ दिख रहा है।

यहाँ हमें एक पहाड़ दिख रहा है।

एक बिजली का खंबा नजर आ रहा हैं।

बाल्टियों के ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा--

यहां हमें तीन टैक्टर दिख रहे--

तीनों ट्रैक्टर पर माला लगी हुई है।